एक मॉल है जिस में फ्रिज मिलता है मशीन हैं इसमें कुछ लिखा हुआ लाउक रहा है इस मे सेमसंग का समान भी है बहुत बढ़िया हैं ।

एक शोरूम है शोरूम में बहुत बड़ा - बड़ा लाइट हैं इसमें मोटर - सायकल बहुत क्वालिटी का है बड़िया शोरूम है।

एक पेट्रोल पम्प है इसके आगे बहुत टेम्पो खड़ा है इस पे दस से पन्द्रा जन अदमी भी है।